एक बस छूट गया है यहां से सवारी भर गया है।

यहां एक जंगल है दोनों बगल से पहाड़ है।

कुछ पौधा कुछ भी लगा हुआ।

फ्रिज भी लग लगा हुआ फ्रिज कुछ अह कुर्सी है।

लेकिन के लाइन लगा के बहुत अच्छा भी लग रहा है।